और बोनेट भी ऊपर है पीछे साइड पे छोटे छोटे घर हैजो भूरे रंग की है। बगल मे एक कार है जो पीले रंग की--

दो आदमी खड़े हुए है और फुव्वारा चल रहा है जो सफ़ेद रंग का पानी है।